रीलाईंस का एक पेट्रोल पंप रीलाईंस पेट्रोल (petrol) पंप का एक शाखा--

यह भारत पैट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है एक ब्रांच एक शाखा यहाँ पेट्रोल डीजल मिल रहा है लोग भारा भी रहे हैं पेट्रोल डीजल यहाँ मिलता है ।

लोकल ट्रैन अपने रेलवे लेने से गुजर रहा है ऊपर बिजली का तर दिख रही है बिजली की तर जिससे ट्रैन चलता है एक आदमी खड़ा है।

वो चल रहा है ट्रेन अपना पटरी में ‌ अपने रास्ते में प्लेटफार्म से निकल रहा है।

पेंट लगा हुआ है पुट्ठी करवाया हुआ है दरवाजा दिख रहा है फ्लोर पर।

ओप्पो ओप्पो एफ फिफ्टीन से फोटो खींचा गया है स्टेटस क्क स्क्रीनशॉट --

जहाँ अंबिकापुर का बोर्ड दिख रहा है सामने से एक ट्रेन आ रही है अभी-अभी बरसात हुआ है लगता है।